और यहा पे गले में हार पहनाया हुआ है और एक साइड साइड में एक आदमी की फोटो है वहा पे--

और यहां पे है छोटे बच्चों की साइकिल जो छोटे बच्चे बैठकर खेलते हैं लाइट चालू है यहां पे दरवाजा दुकान दरवाजा चालू है।

यहा पे येलो कलर की बिल्डिंग है और जहा उसपे कनर लिखा हुआ है और यहा पे कुत्ता सोया हुआ है झाड़ के छाव के निचे और--

फोर व्हीलर है जो लाल कलर की है उधर आगे है स्कूटी ढहरी हुई है और धुप है आसमान नीला है साइड में हरे भरे झाड़ है।

यहा है साईं बाबा की तसवीर यहा पे है मूर्ति इनकी और इसके बाजु में है यह पे भी दुर्गा माता--

पे बेठे हुए है और वहा पे है दिया लगाया हुआ है।

यहा पे है हजीपुर हजीपुर जक्सन है जो यहा पे है उर्दू में मराठी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है।

लेके जाते है आसमान में थोड़े से बादल है झंडा है जो इंडिया का है और यहा पे है मोर के निशान--

यहा पे सर है जो टिउसन ले रहा है जो वाइट बोर्ड है और यहा पे है स्टूडेंट जो लिख रहे है।

ये है नदी जो एक आदमी बेठा हुआ है नदी के किनारे और यहा पे है रास्ता जो यहा के जरिये से जा सकते है।

और उसके आगे भी है जो लोग बैठे हुए हैं और हरियाली है। आसमान में थोड़े से बादल हैं और पानी है। हरा नजर आ रहा है।

और यहा पे बॉक्स में है पेन है पेन अलग अलग किस्म के है एक आदमी है जो ले रहा है।

और उसके पीछे सोये है व्ही सोफा सेट है जिसका कलर है चोकॉलाटी में--

यहां पे लोग हैं। दो महीले महिला और तीन जेंट्स है। एक लड़का फोन में देख रहा है।

और यहा पे है नीडल जो उसने रखा हुआ है ब्रेक में और दीवार है दीवार का कलर है पिंक ।

दो लड़कियां है जो दुर्गा की तरह एक्शन कर रहे हैं और यहां उसके हाथ में त्रिकोण हैं एक के हाथ में चाकू है और एक हाथ में है।

ग्रीन और ऑरेंज है और दीवार का भी कलर है और सामने--

यहा पे एक दुकान है जो गारमेंट्स लिखा है भाई जो चिव गारमेंट्स जो यहा पे जीन्स है।

माँ संतोषी मेडिकल और यहाँ पे मेडिकल है जिसका नाम है माँ संतोषी मेडिकल ।

ये जो एक हाथ करके बेठा हुआ है इसके पीछे एक है लाइट है लाइट चालू है और एक आदमी उदर देख रहा है।

यहा पे एक मंदिर है जो यह पे अलग अलग मुर्तिया रखी है उपर है ड्रैगन जो दो ड्रैगन है और--

ये रोका फोटू है जो बड़ी जोश में लिखा है फेर द वेअर --

से बनाया गया है डेकोरेट दरवाजा खुला हुआ है और अंदर है मूर्ति जो गेट लगाई हुई है।

ये एक डी _मार्ट है जो बड़ा है और यहा पे अलग अलग सामान है जो चोकलेट है बिस्किट है क्रीम है।

पीला है लाल है नीला और व्हाइट है जो सजाया गया है और यहां पे लैपटॉप है जो काउंटर पे और स्कैनर भी है।

यहा पे एक ऑफिस है जो ऑफिस के सा काउंटर पे लैपटॉप रखा है और एक चेयर है जो लाल कलर की है।

पंखा है पंखा चाव यहा पे कुदसिया है बेठने के लिए और एक कुड्सी पर हेलमेट रखा है जो काले कलर का है।

यहा पे जंगल है जो इस जंगल में हरन है हरन बहोत जादे है और यहा पे पेड़ है जो पेड़ अभी छोटे है।

धूप है आसमान साफ है और यहां पे धूल धूल भी है झाड़ है कुछ पत्ते झड़े हुए हैं कुछ सूखे हुए हैं कुछ हरे हैं।

यहा पे दुकान है जो बलून से सजाये हुए है बलून का कलर है ऑरेंज हरा ओए वाइट कलर है जो कॉम्बिनेशन करके लगाये गये है।

और यहा पे है झन्डा जो इंडिया का है उसके उपर स_बी_आई बैंक लिखा हुआ है और वहा पे इंपेक्ट वोश है जो लडकी की फोटू है और--

के हुए है एक बुल्लेट है एक लडकी है जो उतार रहि है टीसर्ट पहनी हुई है झाड है यहा पे पोस्टर है पोस्टर पे हाथी--

तिन पोस्टर है यहा पे बहोत जंगल नजर आ रहा है वहा से पीछे--

और यहा पे है जो पीछे है।

यहा पे है बाल कटिंग की दुकान जो है लोग आते है दाडी करने बाल कट कराने और यह एक टेबल है जिस में टेबल पे--

पाणी का स्प्रे है ओर यहा पे से आइना है बड़ा अलग आईने को सजाया है फूलो से जो हरे पत्ते है।

यहा एक बाजार है जो एक मॉल की तरह दुकान है जो यहा पे फोर व्हीलर जिब जा रही है ट्व व्हीलर भी जा रही है।

और यहां पे है आई_सी_सी बैंक की इस बिल्डिंग में लिखा हुआ है पोस्टर और यहां पे टू व्हीलर खड़ी हुई है।

यहा पे गाय है जो का कलर वाइट है और वो चारा खा रहे है दो गाय चारा खा रहे है।

झार बड़े बड़े है जिसके छाव आ रही है धुप है आसमान नीला नजर आ रहा है।

यहा पे एक हस्बैंड और वाइफ है जो रिक्शा खरीद रहे है हस्बैंड ने चोक्लटी कलर का टीसर्ट पहना हुआ है और--

यहा पे है एक आदमी घर जा रहा है वेल्लकोमे टू टूरिजियम कैपिटल ऑफ़ महाराष्ट्रा अरंगाबाद है यहा पे बहोत सारे लोग है टूरिस्ट आये है गुमने के लिए--

आया है बैग लेकर हाथ में कागज है अ कोई है जो--

काट रा है लाल मेत है जिसके उपर लोग जा रहे है ठहरे हुए है कोई बात कर रहे है कोई रुक के जा कोई है वहा पे रुके हुए कोई आ रहा है।

यहा पे कुछ लडके है जो डांस कर रहे है और एक सेम कोस्तियम पहना है सिर्फ कलर अलग अलग है और यहा पे है।

जो हाकर देख रहे है पेरेंट्स है मा बाप है इसके पीछे भी यहा पे लडकिया ढहरे हुए जो छोटे है यहा पे--

पर्दों से सजावट की है पर्दों का कलर है गुलाबी वाइट और नीला--

यहा पे है चपल जुते की दुकान जहा पे एक पोस्टर है पोस्टर पे एक लडकी है जो जूते पहन के--

पोस्टर निकाली हुई है और यहा पे जूते भी है चपल भी है लेडिस है जेंस है जेन्स है लेडिस में हिल वाले भी है।

जो बड़े दंपल है जो मशीन है थाई की मशीन है जो वजन कम कर सके लाइट है लाइट चालू है खम्भे है खम्भे का कलर येलो है।

यहा पे का दुकान है दुकान में तो है एक ग्रीन कलर की और एक ब्लैक कलर की इस दुकान में कोई नही बेठा हुआ है और एक लैपटॉप है लैपटॉप इदर साइड है और यहा पे लाइट है।

यहा पे एक छुला है दो रखे हुए है और एक टेबल है टेबल पे दो भगोने है भगोने के उपर चाय का भगोना है और एक ग्लास है।

कुर्सी हैं लाल कलर की जो खाली है और उसके बाजू में एक छोटा सा टेबल है बाहर है।

यहा पे है घर में जो लाइटिंग का काम है यहा पे है वायेर जो टी_वि के लगाये जाते है और यहा पे प्रिंट है जो पैन्टिन्ग का भी--

डब्बा है और यहा पे ड्रॉवर है ड्रॉवर में कुछ रख सकते है इसका कलर चोकलेटी है और लाइटे चालू है और यहा पे एक कलर है जिसपे लटकी हुई है।

यहा पे मोमबती है जो का कारती के दिये में है और अगरबत्ती भी है यहा पे सेम वेसा ही है जो आगे भी है मट्टी का दिये है जो बड़े--

और वहा पे अगरबती के साथ मोमबत्ती भी रखा हुआ है और रात का समय है।

यहा घर है जो बंद है क्लिप्स से लगा हुआ है और यहा पे है जो चीटी लेटर डालते है।

और उसके बाजु मेभी दुकान है जो क्रीम और वहा पे--

कुछ मंडी डेवलपर ब्लॉक यहां पे एक जैन लड़का जा रहा है एक बूढ़ी औरत है जो जा रही है उसके बाजू में--

आसमान साफ है उसके पीछे जो झाड़ है जो नारियल के बड़े झाड़ नजर आरे है और यहा पे एक मूर्ति भी है।

यहां पे एक मंडप नजर आ रहा है और बाजू में बाहेर मोर न मोर हैं जो मोर का--

वाइट है जो नार्मल है और अंदर है जो लोग बेठे हुए है।

यहा पे गाव में है जो उनकी ओरते है वे है यहा पे डोक्टर है जो इनका चेकुप करने के लिए आया हुआ है ओरते है जो ओड के आई हुई है मुह्ह पर बांध के आई है।

और डोक्टर है जो वाइट कलर की टीसर्ट पेड़ पेड़ के पहना हुआ है और यहा पे कुडसिया है कुड्सियो पे बहोत सारे बेठ बेठे हुए है।